यह एक जगह का चित्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है बहुत सारे बच्चे है जिनके हाथ मे पुरुस्कार है।

कार मे पन्नी चढ़ी हुई है कार का रंग लाल है।